एक सड़क है और इस सड़क के किनारे से एक लाइन दी गई हुई है और बहुत सारे पेड़-पौधे--